मेरे सामने एक तस्वीर है जो की एक जिम की तस्वीर है।

इसमें एक बेंच है जो रेड कलर का है इसके सामने एक मिरर लगा हुआ है इसमें एक इंसान दिखाई दे रहा है।

मेरे सामने एक चित्र है जो किसी पार्क का चित्र प्रतीत होता है।

एक ने लाल टी शर्ट पहन रखी है और एक ने काली टी शर्ट पहन रखी है।

जिसमें दो इंसान बैठे हुए हैं एक ने सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा है और एक टे रंग बिरंगी टी शर्ट पहन रखी है।

जिसपे एक टेबल रखा हुआ है।

और उसकी खिड़की से बाहर का सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है यहां एक स्टैंड भी रखा हुआ है जिस पे कुछ सामान रखा हुआ है।

इसमें आर_सी_सी बनाया जाता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये काफी बड़ा है अपने आकार में।

मेरे सामने एक चित्र है जिसमें एक धार्मिक अनुष्ठान की तस्वीर दिखाई दे रही है जे ये किसी--

मेरे सामने एक चित्र है जो किसी चर्च का चित्र प्रतित होता है यहां कुछ बालिकाएं खड़ी हुई है जिसने पीले रंग की--

और इसके मध्य में एक बेंच रखा हुआ है बैठने के लिए।

मेरे सामने एक चित्र है जो कि किसी रिसेप्शन हॉल का चित्र प्रतित हो रहा है।

मेरे सामने एक चित्र है जो एक भव्य स्टेज के जैसा प्रतित हो रहा है।

मेरे सामने एक चित्र है जिस पे एक बिल्डिंग में एक बोर्ड लगा हुआ है।

जिसमें एक घंटा घर जैसा कुछ गुंबज प्रतीत हो रहा है ये कोई स्टेशन भी हो सकता है।

जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है उस पर रिलाएंस मेट सिटी लिखा हुआ है ये प्लाट बेचने का काम करते--

मेरे सामने एक तस्वीर है जो किसी स्कूल के बरामदे की तस्वीर नजर आ रही है।

और दीवारों पे महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं।

इसमें सामने यहां दो नौकाएं रखी हुई हैं जिसपे कोई नहीं बैठा हुआ है।

जोकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की दुकान जैसा प्रतीत हो रहा है।

जिसमें कुछ वर्कर भी खड़े हुए हैं जिन्होंने नीली शर्ट पेहन रखी है और यहां हरे रंग का फर्श है।

मेरे सामने ये चित्र है जो किसी शादी के रिसेप्शन का चित्र प्रतीत होता है यहां स्टाल लगे हुए हैं।